और यहाँ पर सामने एक टेबल रखी हुई है। टेबल पर एक बौटल रखा हुआ है।

ये एक बस स्टैन्ड है जहाँ पे (पर) बहोत (बहुत) सारी बस खड़ी हुई हैं।

फूलों के पौधे लगे हुए हैं जैसे पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज कलर के हैं।

कुछ लाल कलर के पौधे भी हैं और मिट्टियाँ पड़ी है। यहाँ पर कुछ सुखी पत्तिया नीचे गिरी हैं।

अ यहाँ पे बहोत सारी लेडीसें हैं। जो यहाँ पे योगा कर रही हैं और सब एक पेर पे खड़े हैं। उनके हाँथ ऊपर हैं।

ये एक कम बहोत बड़ा सा कार पार्किंग दिखाई दे रहा है। जिसके पास नीचे सफ़ेद और काले कलर की बहोत सारी --

कुर्सियाँ और टेबल रखी हुई हैं और यहाँ पे एक लाइट जल रही है। अंदर की साइड भी लाइट जल रही है।

बहोत सारे इंसान लाइन लगा के खड़े हुए हैं लेडीसें खड़ी हैं जिन्होंने लाल पीले कलरफुल --

अ ये एक शॉप है।

अंदर के साइड पे बहोत सारी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

चेयर पे बैठे हुए हैं। उनके हाथ में बुक्स हैं।

और लाइट के रोशनी में बहोत सारे घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये एक कार शॉप दिखाई दे रही है।

बड़े से नट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं जो बड़े-बड़े मशीनों में यूज़ कर किये जाते हैं।